इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक बड़ी सी बिल्डिंग हैं।

बहोत सारे जिम की इक्विपमेंट्स है मशीन्स है।

दो चार लड़के हैं अंकल है जो बाहर बुक कॉपी लेने आए हैं।